लिबर ऑफिस माथ पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम लिबर ऑफिस माथ के परिचय और फॉर्मूला एडिटर के बारे में सीखेंगे
हम निम्न विषय सीखेंगे
लिबरऑफिस माथ क्या है
फॉर्मूला एडिटर का उपयोग करके माथ का उपयोग करने के लिए सिस्टम की आवश्यकताएँ
साधारण फॉर्मूला लिखना
लिबरऑफिस माथ क्या है
लिबर ऑफिस माथ गणितीय फोर्मुले को एडिट करने और बनाने के लिए बनाया गया एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन है
यह लिबर ऑफिस सूट में मौजूद है और अतः यह ओपन सोर्स मुफ्त और वितरण के लिए मुफ्त है
माथ का उपयोग करके बनाये गये फोर्मुले और समीकरण यहीं कार्य कर सकते हैं
या लिबर ऑफिस सूट में अन्य डॉक्युमेंट में उपयोगित हो सकते हैं
फोर्मुले राइटर या कैल्क में डॉक्युमेंट्स में सन्निहितएम्बेडेड किये जा सकते हैं
फोर्मुलों के कुछ उदाहरण हैं fractionsफ्रैक्शन्स integralsइंटिग्रैल्स equationsइक्वैशन्स और matricesमैट्रिसेस
माथ का उपयोग करने के लिए सिस्टम्स आवश्यकताएं देखते हैं
विंडो के लिए आपको माइक्रोसाफ्ट विंडोज 2000सर्विस पैक 4 या अधिक एक्सपी Vistaविस्टा या विंडोज 7 की आवश्यकता होगी
pentium कंपैटिबल पीसी 256 एमबी राम उबंटु लिनक्स के लिए लिनक्स कर्नेल वर्जन 2618 या अधिक pentium कंपैटिबल पीसी 512एमबी राम सिस्टम आवश्यकताओं पर पूर्ण जानकारी के लिए लिबर ऑफिस बेवसाइट पर जाएँ
यदि आपके पास लिबर ऑफिस सूट पहले से ही संस्थापित है फिर लिबर ऑफिस सूट प्रोग्राम्स में माथ मिलेगा
यदि आपके पास लिबर ऑफिस सूट संस्थापित नहीं है तो आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड़ कर सकते हैं
लिनक्स में आप इसे सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर से संस्थापित कर सकते हैं
मैंने लिबर ऑफिस वर्जन 333 संस्थापित किया है
चलिए शुरू करते हैं और माथ एप्लिकैशन खोलते हैं
विंडोज में स्टार्ट मेन्यू पर जाएँ
अल्ल प्रोग्रामसगट्गट लिब्रियोफिस सूटेगटीजीटी लिब्रियोफिस माथ पर क्लिक करें
हम इसे लिबर ऑफिस राइटर डॉक्युमेंट से पा सकते हैं
अब नये टेक्स्ट डॉक्युमेंट को खोलने के लिए लिब्रियोफिस Writerलिबरऑफिस राइटर पर क्लिक करें
अब राइटर विंडो में माथ पर जाएँ
मेन मेन्यू बार में इंसर्ट मेनू इनसर्ट मैन्यू पर क्लिक करें और फिर ऑब्जेक्ट पर जो कि नीचे की ओर है और फिर फॉर्मुला पर क्लिक करें
अब हम राइटर विंडो में तीन क्षेत्र देख सकते हैं
पहले सबसे ऊपर राइटर क्षेत्र है
यहाँ छोटे ग्रे बॉक्स पर ध्यान दें
यह वह है जहाँ हमारे द्वारा लिखे इक्वेशन्स या फोर्मुले गणितीय फॉर्म में दिखाई देंगे
दूसरा है फॉर्मूला एडिटर क्षेत्र एरिया जो नीचे मौजूद है
यहाँ हम विशेष मार्कअप लैंग्विज में गणितीय फोर्मुले टाइप कर सकते हैं
और तीसरा है एलिमेंट्स विंडो जो कि दायीं ओर होता है
यदि एलिमेंट्स विंडो नहीं दिखाई देती हम इसे व्यू मेन्यू पर क्लिक करके और फिर एलिमेंट्स को चुन करके ऐक्सेस कर सकते हैं
यह विंडो हमें गणितीय चिन्ह और अभिव्यक्तियाँ प्रदान करता है
यदि हम राइटर क्षेत्र में ग्रे बॉक्स के बाहरी ओर एक बार क्लिक करते हैं माथ विंडोज गायब हो जाता है
माथ फॉर्मूला एडिटर और एलिमेंट्स विंडो को वापस लाने के लिए ग्रे बॉक्स पर डबल क्लिक करें
अच्छा चलिए अब एक साधारण मल्टिप्लिकेशन फॉर्मूला लिखते हैं 4एक्स3 12 अब एलिमेंट्स विंडो में ऊपर और नीचे सिम्बल्स चिन्हों की श्रेणियाँ हैं
चलिए सबसे ऊपर दायें आइकन पर क्लिक करें टूल टिप यहाँ यूनरी या बाइनरी ऑपरेटर्स दिखाता है
और नीचे हम कुछ बुनियादी गणितीय ऑपरेटर्स देखते हैं जैसे कि प्लस माइनसमल्टिप्लिकेशन और डिविजन
दूसरी रो में मल्टिप्लिकेशन दर्शाने वाली आ इंटो ब पर क्लिक करें
अब फॉर्मूला एडिटर विंडो पर ध्यान दें
यह टाइम्स शब्द द्वारा विलग दो प्लेस होल्डर दर्शाता है
और सबसे ऊपर राइटर ग्रे बॉक्स क्षेत्र में मल्टिप्लिकेशन सिम्बल द्वारा विलग दो स्क्वेर्स पर ध्यान दें
इस पर डबल क्लिक करके फॉर्मूला एडिटर में पहले प्लेस होल्डर को चिन्हांकित करें और फिर 4 टाइप करें
आगे दूसरे प्लेस होल्डर को चिन्हांकित करें और फॉर्मूला एडिटर विंडो में 3 टाइप करें
ध्यान दें कि राइटर ग्रे बॉक्स स्वयं ही रिफ्रेश हो गया है और यह 4 इंटो 3 दर्शाता है
हम ऊपर व्यू मेन्यू पर क्लिक कर सकते हैं और अपडेट चुन सकते हैं
या विंडो को रिफ्रेश करने के लिए हम की बोर्ड शॉर्टकट फ़9 का उपयोग कर सकते हैं
आगे फॉर्मूला को पूर्ण करें और इस इक्वल टो12 इसमें जोड़ें
इसके लिए दूसरे आइकन पर क्लिक करें जो एलिमेंट्स विंडो में कैटगॉरिस सेक्शन में रिलेशंस दर्शाता है
यहाँ विविध रिलेशन एलिमेंट्स पर ध्यान दें
पहला चुनें आ इस इक्वल टो ब और हम पहले प्लेस होल्डर को डिलीट करेंगे और दूसरे प्लेस होल्डर में 12 टाइप करेंगे
और यह हमारा राइटर क्षेत्र में पहला सरल फॉर्मूला है 4 टाइम्स 3 इस इक्वल टो 12
अभी हमने सीखा कि सरल तरीके में फॉर्मूला लिखने के लिए एलिमेंट्स विंडो का उपयोग कैसे करें
हम यहाँ फॉर्मूला एडिटर विंडो पर राइट क्लिक करके और सिम्बल्स को चुनकर भी फॉर्मूला लिख सकते हैं
एलिमेंट्स विंडो में सिम्बल्स की उसी कैटगॉरी को कांटेक्स्ट मेनू कान्टेक्स्ट मैन्यू दर्शाता है
किसी कैटगॉरी को चुनना उस कैटगॉरी में उपलब्ध सिम्बल्स को दर्शाता है
फॉर्मूला लिखने का एक तीसरा तरीका है
हम फॉर्मूला एडिटर विंडो में सीधे फॉर्मूला लिख सकते हैं
यहाँ हम एक विशेष मार्कअप लैंग्विज का उपयोग करेंगे जिसे माथ एप्लिकैशन समझता है
हम मार्कअप लैंग्विज का एक साधारण उदाहरण पहले ही देख चुके हैं
4 टाइम्स 3 इक्वल्स 12
यहाँ टाइम्स शब्द का ध्यान रखें
उसी तरह 4 डिवाइड 4 इक्वल 1 लिखने के लिए मार्क अप है 4 ओवर 4 इक्वल्स 1
अब जबकि हमने कर दिया है यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
राइटर विंडो में निम्न फोर्मुले लिखें
4 डिवाइडेड बाय 4 1 अपने फोर्मुले के बीच में खाली लाइन एंटर करने के लिए न्यूलाइन मार्कअप का उपयोग करें
आ बूलियन एंड ब 4 इस ग्रेटर थान 3 एक्स इस अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टो य
एंड 4 इस नोट इक्वल टो 3 अब हम लिबर ऑफिस माथ परिचय और फॉर्मूला एडिटर पर इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं
संक्षेप में हमने निम्न विषय सीखे
लिबर ऑफिस माथ क्या है
माथ का उपयोग करने के लिए सिस्टम आवश्यकताएं और पूर्वापेक्षाएँ
फॉर्मूला एडिटर का उपयोग करना
साधारण फॉर्मूला लिखना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
यह प्रोजेक्ट httpspoken tutorialorg द्वारा संचालित है
इस मिशन पर अधिक जानकारी के लिए उपलब्ध लिंक पर संपर्क करें httpspoken tutorialorgNMEICT Intro यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद